यहाँ एक आदमी गेल बाटे जोन की एक फूल लेले बाटे ओकर कलर उजला बाटे।

देखे में बोहउत ही अच्छा लगत्वा ईहा दो आदमी फोटो भी खीचत वाड़े।

ओकरा बगल में एगो पोधा भी बा जोवन की आम के पेड़ बा।

और वो बोल भी लगावल बा जोनकी उजल कलर के बाटे।